और दुकान में बहुत क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है?

और लिखा भी है नीचे काफी सींस ।

अरबी साइड में भाषा में कुछ लिखा हुआ चार आदमी खड़ा हु दिख रहा है।

गेट के साइड में पिलर है पिलर के ऊपर कुछ हाथी का अह सर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ।

स्टेडियम में लाइट दिखाई दे रहा है।

ये एक पार्टी है पार्टी में यह दिखाई दे रहा है एक मंदिर जैसा बना हुआ है।

रथ यात्रा निकाला हुआ है।

भगवान जी का बहुत सारे लोग रस्सी खींच रहे है।

और साइड में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बास दिखाई दे--

कॉफी स्टॉल दिखाई दे रहा है पीछे कॉफी स्टॉल बोलकर फ्लैश दिखाई दे रहा है।

एक पुल दिखाई दे रहा है।

और पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक वायर दिखाई दे रहा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है।

जिसका बॉर्डर पैंट पीला रंग का है।

ये एक बाइक का दुकान है।

एक आदमी झुक कर मशीन ठीक कर रहा है।

पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

और साइड में बुलडोजर आधा दिखाई दे रहा है।

नाली भी दिखाई दे रहा है।